और यहां दहेजों में जहां भी हमारा इनका सामान जाता है वहां से तारीफ भी मिलती है।

इतना अच्छा बना हुआ हाइवे है कि कह नहीं सकते। वह --

हम भी कुछ आगे के लिए सही सोचेंगे अपने बच्चों के बारे में।

ऐसा लगता है कि हम भी यार क्यूँ ना अपने अपने स्कूल में कार्यक्रम भाग लेवे। इस समय और अच्छा प्रतिश --

क्यूँ ना यार हम भी यार फुटबॉल क्लब से ही यार। हम भी यार उसमें तैयारी करें फुटबॉल में पैसे भी अच्छा खासा मिलता आया।

तालाब है यार। हमारे गाँव में भी यार बहुत तगड़ा तालाब है यार। है ना उसमें तरह-तरह की मछली वगैरह और मछुआरे मछ्ली पकड़ते हैं। और --

बड़ा बढ़िया बनवाए हम भी यार बनवाएंगे अपने घर में ऐसे ही रूम है।

शॉफ पे आती है औ मल्लव आदमी अगर कहीं जाता है आने जाने में उसके मुँह पे --

बिल्कुल मुनासिब रेटों में इतने अच्छे-अच्छे कपड़े बच्चों के यार देख के बड़ा मजा आ रहा था यार।